हनुमान जी का पूजा हुआ इसी कारण जुलुष निकालने वाले और काफी सारे बच्चे लोग भी आया हुआ और डिजे वगेरा के वेट मे हैं और डांस --

ये चल पड़ा और यहाँ पे सटा है और इसी कारन यहाँ पे--

यहाँ पे देख सकते है ये भाई लोग--

ये रेस्टोरेंट है और ये भाईलोग देख सकते है खाना खा रहै हैं।

फेर लगाया हुआ है फैन है और यहाँ पे ए. सी. दिख रहा है सब कुछ मौजूद है और काफी --

और ये काफी प्यारा कॉलेज है देख सकते है काफी बड़ा और यहाँ पर चारो ओर--

नारियल का पेड़ लगाया हुआ है और हरा-भरा दिखाई दे रहा गाप लोगो को--

आज क्रिसमस डे है और देख सकते है काफी बच्चे लोग --

और ये इंजीनियर हैं और देख सकते हैं यहाँ पे ये लोग काफी बड़ा-बड़ा बिल्डिंग बन रहे हैं और फ्लैट है ये और यहाँ पे पिल्लर रोड --

ओर यताच चिल्ला रहे थे इसी कारण इसको खोल के ला रहे हैं।